चार जने बाहर खड़े हुए जिस तीन जेंट्स हैं एक लेडिज खड़ी दिखाई दे रही है।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

यहाँ पर व्हाइट कलर और ब्लू कलर की लाइटें भी लगी हुई हैं। नीचे टाइलें बिछी --

यह चित्र हमें एक स्कूल का दिखाई दे रहा है जिसमें हमें दो जेंस दिखाई दे रहे हैं और नीचे टाइलें भी बिछी हुई है जो ग्रे कलर की है और--

इस चित्र में हमें कुछ व्यक्ति व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे है जिसमें लेडीज और जेंस है।

इस चित्र में हमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें जेंट्स और लेडीज दोनों है।

इस चित्र में हमें एक डॉक्टर और एक मरीज भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें कुछ देवी देवता दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे लेडिस और जेंट्स भी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में हमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक तालाब के पास का है। एक नाव पलटी हुई है।

यह चित्र जंगल का है जिसमें चारों तरफ से जाल लगाकर बकरियां बांध रखी है।

और एक फैन भी लगा हुआ है और एक कांच की एक स्लैब भी लगी हुई है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

कुछ बजरी पड़ी है जो ढेर लगी हुई है और--

यहाँ पर एक शॉप दिखाई दे रही है जो कंपनी है एल_जी की और इसमें बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

इस चित्र में हमें बाजार दिखाई दे रहा है।

और सिलेंडर भी रखा हुआ हैं एक ऑटो भी खड़ा हुआ है जिसपे अतुल लिखा हुआ है।

यहां पर बना बनाया चिकन मिलता है।

तवा चिकन लिखा हुआ है यहां पर एक डस्टबिन नीले कलर का रखा हुआ है।

एक कुर्सी और बराबर में रखी हुई है व्हाइट कलर की मेज है और कुछ सामान भी रखे हैं रंग बिरंगी कलर के--

और यहां पर दोनों तरफ गमले रखी हुई हैं उसमें कुछ फूल भी सजे हुए हैं।

और बराबर साइड में पिछली साइड में एक खंबा भी दिखाई दे रहा लाइन वाला।

दो व्यक्ति खड़े हैं जो अपने से देख रहे हैं।

ब्राउन कलर के पर्दे भी हैं और रंग बिरंगी लाइटें भी हैं लगी हुई।

इस चित्र में हमें एक बरामदा दिखाई दे रहा है।

बाहर ग्राउंड में कुछ जेन्स भी बैठे हुए हैं और एक जेन्स दो जेन्स खड़े हुए हैं और एक चल रहा है।

और यहां पर नीचे फर्श बिछा हुआ है।

इस चित्र में हमें चिराग मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल दिखाई दे रहा हैं।

और उसके बराबर में एक गाड़ी खड़ी है दूसरी तरफ भी गाड़ी खड़ी है कुछ कट्टे भी दिखाई दे रहे है रखे हुए।

यह चित्र रानी लक्ष्मी का है और यहां पर कुछ लेडिस और जेंट्स भी खड़े--

इस चित्र में हमें जिम का सामान दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें फूलों की दुकान दिखाई दे रही है जो डेकोरेशन की है वहा सड़क पर।

जो सड़क दिखाई दे रही है उसमें ईटे बिछी हुई है।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि यह एक मंडप लगा हुआ है।